ज्यादा से ज्यादा है एक मंजिल है दो मंजिल है।

बहुत ज्यादा खिलता भी है देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है।

जो कि सभी रंग की चिड़ियाँ हैं और अच्‍छा भी लग रहा है और हमलोग चिड़ियाँ जानवर को देखने के लिए पटना पटना में जाते हैं।

ये छठ पूजा हो रहा है जो लोग की बहुत यहाँ मन से लोग छठ पूजा करते है और अच्छा-अच्छा लोगों को फ़ील भी होता है छठ पूजा करके और बिहार और झरकंद और यू.पी. का बहुत ही प्रसिद्ध पूजा होता है और इसको दिल से लोग यहाँ निभाते है।

इसमे हमलोग का छठ पूजा भी होता है सरस्वती होता है दुर्गा होता है।